ऊपर कई सारे पौधे रखे हुए हैं कई तरह के पौधे भी ला --

यहाँ पर सड़क पर एक्स एक लड़का साइकल चला रहा है।

यह एक रैसटुरन्ट है और यहाँ पर ऊपर झूमर लगा --

फिर महिलायें केशरी कलर की केशरी रंग की साड़ी पहनी हुई हैं।